पीछे से एक गाड़ी निकलकर आ रही है साइड मे भी लाइट लगी हुई है अंधेरा हो रहा है पास में --

जेन्ट्स एक लेडिस और कुछ बैग रखे हुए है हं-हं-हौल काफी बड़ाव है उसमे टालसे लगी हुए है।

हम्म साइड में पेड़-पौधे भी लग रहे है आकाश धुंधला -धुंधला दिखाई दे रहा है।

एक पत्थरों की जगे है वहाँ पर नंदी भगवान और बोलेनाथ जी के पिंडी है वहाँ पे और भी देवी देवता है।

एक बूक की लायब्ररी है। जिसे काफी सारे बुक्स रखी हुए है इसमे बूक्स जमी हुए रखे हुए है।

ए एक जिम है जिम में काफी सारे जिम करने की मसीने रखी हुई है काफी सारे लाइट्स लगी हुई है एक पिल्लर पे स्वातिक बना हुआ है।

कुछ पहाड़ी पर छाव और कुछ पर धूप निकाल रही है पहाड़ी कफी बड़ी बड़ी वो है जो काफी सुंदर दिखाए दे--

अरे पहाड़े इलखा है जिसमे मकान बने हुए एक काफी बड़ी बिल्डिंग बनी हुए है।

जिम मे एक रोशनदार खिड़की है जिम की मसीने लाइन से जमी हुई है मुझमे एक लग रहा--

कमरे पर टिन छड़े हुये है एक दरवाजा है दो रोशनदान दिखाई दे रहे है।

जिनमे गाड़ी सुधारने का सामान रखा हुआ है।

अरे एक बहुत प्राचीन मंदिर है जिसमे शेरावाली माँ मातारानी और देवी देवता--